कि लोग म खुशी मना रहे हैं ये दीपावली का समय है लग रहा है लोग काफी पटाखे छोड़ रहे हैं।

पेट्रोल पंप में एक छत है और काफी सारे पिलरे हैं।

पत्थर टुकड़ों में बिखरे हुए हैं लग रहा है यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या मकान बनाने का काम चल रहा है।

और नीचे घास भी है और काफी अच्छा लग रहा है सुंदर है।

और लग रहा है नया कोई किचन का निर्माण किया जा रहा--